जहां पर दो बतख तैर रहे हैं और यहां पर काफी पानी है और एक सुनहरा सूरज की रोशनी यहां पर दिख रही है।

पर आजू बाजू का जो मंजर नजर है एक दम हरियाली का मंजर है।